बहुत सारे ऑटो खड़े हुए दिख रहे हैं गाड़ियां दिख रही हैं जेंट्स खड़े हुए दिख रहे हैं रोड पे पानी फैला हुआ दिख रहा है।

बहुत सारी लेडीजे खड़ी हुई दिख रही जेंट्स खड़े हुए दिख रहे बच्चे भी दिख रहे एक लेडिज के हाथ में जेंट्स --

लड़का दिख रहा है मम्म एक पार्टी बर्थडे पार्टी चल रही है बैलून लगी हुई दिख रहे हैं बेंच रखी हुई दिख रही हैं लाइटें लगी दिख रही हैं सभी के हाथ में गिफ्ट --

यहाँ पेड़-पौधे दिख रहे हैं बहोत सारा कचरा पड़ा हुआ दिख रहा हैं मकानो की बाउंड्री दिख रही हैं गाड़ियां दिख रही हैं बहुत सारी ट्रेन --

कचरा दिख रहा है ग्रीन पिंक नीला एक टपरी टाइप --

पंखे लगे हुए दिख रहे हैं पंखो के नीचे दो-तीन जेंट्स और बैठे हुए दिख रहे हैं गेट लगा हुआ दिख रहा है बल्ब लगा हुआ दिख रहा है कलर किया हुआ --

बेड रखे हुए दिख रहा हैं कलर दिख रहा हैं गुड़ियान में गुड्डी रखी हुई दिख रही हैं।

पिंक कलर रेड कलर ब्लैक कलर कत्थई कलर ग्रीन कलर व्हाइट कलर जामुनी कलर --

व्हाइट कलर अलवारी दिख रही बस ऐसे --

कॉफ़ी रखी हुई दिख रही हैं मकान दिख रहा है ग्रीन कलर नीली कलर का व्हाइट कलर का आसमानी कलर पीला कलर --

रंग-बिरंगी पन्नियां दिख रही हैं --

मरकरी लगी हुई दिख रही ग्रीन जामुनी व्हाइट कलर की मकान उन पे चद्दर सेट दिख रही है चेयर लगी दिख रही है बॉक्स रखे दिख रहे हैं दो अगल-बगल एक जेंट्स --

सभी के पास जेंट्स खड़े हुए दिख रहे हैं बैग दिख रहा है एक के जेंट्स के हाथ में गाड़ी दिख रहे हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं रोड दिख रहा है पेड़ --

बहोत सारे जेंट्स बैठे हुए दिख रहे हैं एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है रेड कलर की लाइट दिख रही है व्हाइट कलर की दिख रही है ब्लैक कलर दिख रहा है सभी चीज का --

में जमुनी कलर पिंक कलर दिख रहा है वाइट कलर दिख रहा है ऊपर तोता कलर दिख रहा है पीला कलर दिख रहा है लाइट्स लगी हुई दिख रहीं हैं।

बहुत सारे जेंट्स लेडीज खड़ी दिख रहा हैं एक लड़की --

गाड़ी खड़ी हुई दिख रही है पेड़-पौधे दिख रहे हैं ऑरेंज कलर का मंदिर दिख रहा है टीन सेट हुई दिख रहा है रोड पे कचरा दिख रहा है पानी भरा हुआ दिख रहा है गड्ढे वगेरह दिख रहे हैं।

जामुनी कलर वाइट कलर पीली कलर रेड कलर कलर ग्रीन कलर .

एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है पीछे पंखा दिख रहा है कॉफी रखी हुई दिख रहे बहुत सारी किताबें पेन पेंसिलों के --

मकान दिख रहा है ग्रीन कलर का डिज़ाइन बनी हुई दिख रहे तीन लकड़ियाँ दिख रही ईंट दिख रही सीढ़ी दिख रही पर।